इधर हमको सामने एक बेल्कोंनी दिखाई दे रही है।

हमको दीवार में दो ठो पिक्चर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मूर्ति का कंधा में हमको व्हाइट कलर का डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में हमको काफी सारा टी_वी भी दिखाई दे रहा--

हमको इदर दुकान का दरवाज़ा और खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

हमको इधर एक लाइट पोल्स भी दिखाई दे रही है।

आसमान में काफी सारे बादल भी दिखाई दे रही हैं।

घर का बाहर एक कार पार्क हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने हमको काफी सारा छोटा छोटा घास फूस भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर एक बड़ा सा बैनर लिखा हुआ है जिसमें शर्मा होटल एंड रेस्टुरेंट लिखा हुआ है।

हमको इस तस्वीर में एक बैडमिंटन कोर्ट दिखाई दे रहा है।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

हमको इस तस्वीर में दो इंसान दिखाई दे रहा है।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

पहाड़ का नीचे हमको एक छोटा सा दीवार भी दिखाई दे रहा है।

सड़क में बहुत सारा गाड़िया दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमको एक घर दिखाई दे रहा है।

वो घर का अंदर काफी सारा लाइट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर हमको एक दरवाजा भी दिखाई दे रही है।

हमको इधर में लाइट भी दिखाई दे रहा।

पीछे हम को एक घर दिखाई दे रहा है।

नीचे हमको एक चुनरी भी दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे झंडे भी दिखाई दे रहा है।

रास्ते के किनार हमको एक बैनर भी दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लिखा हुआ--

घर का ऊपर इनडोर एंड कैजुअलिटी लिखा हुआ है।

हमको इधर लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर हमको काफी सारा बैग भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का ऊपर हमको एक बैनर दिखाई दे रहा है।

हमको इधर काफी सारा लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

रेड कलर की पिलर भी दिखाई दे रही है।

मुझे तो जमीन में एक कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक बरा सा नदी डिखाई डे रहा है।

हमको नदी में दो नाव तैरते हुए दिखाई दे रहा है।

दुकान हमको काफी सारे लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

सामने हमको एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

हमको इधर घर का बरांडा भी दिख रहा है।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

ग्रीन कलर का टीना दिखाई दे रहा है।

हमको कॉर्नर में काफी सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का फूल भी दिखाई दे रहा है।

बास्केट भी दिखाई दे रहा है।